यहां पास बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

साथ मे यहां पर बहुत सारे साउंड बॉक्स रखे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे लोग मछली पकड़ रहे हैं।

और यहां पर बहुत सारे टीन लगाई जा रही हैं जहां पर बहुत सारी गिट्टी और रेते रखे हुए हैं।

नीचे लोहे का फ्रेम लगाया गया है साथ में यहां पर बड़े बड़े अक्षरों में--

यहां पर बहुत सारी कुर्सी रखी हुई हैं और यहां कुछ लोग बैठे हुए हैं चारों ओर कैमरे लगे--

इस फोटो पे मुझे बहोत सारे पर्दे दिखाई दे रहे हैं साथ में यहाँ पर बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं चारों ओर कैमरे लगे हुए हैं।

कैमरे वाला लाइट लगाई गई हैं कुछ लोग यहां बस खड़े हुए हैं चारों ओर कैमरे हैं।

घर बने हुए हैं यहां पर कुछ दुकाने है दुकानों के पास में बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं।

पक्षी बैठे हुए हैं साथ में यहां लोहे की जाली लगाई गई हैं चारों ओर लोग हैं।

लोहे की पाइप और रॉड बनाई जा रही है जहां पर बहोत सारे लोग--

बहोत सारे कैमरे लगाए गए हैं कुछ लोग यहां पास है एक गेट से जा रहे हैं साथ में यहां पास बहोत सारी बाइक स्कूटी जा रही है।

यहां पर दुकान के बाहर बहुत सारी कांच के ग्लास रखे हुए हैं साथ में कांच के दरवाजे लगे हुए।--

यहां पर लोहे की पीन लगाई गई है और यहां पर लोहे के टप रखें हुए हैं साथ में यहां पर बहोत सारे पानी के नल लगे हुए हैं।

यहां पर बहोत सारे साउंड बॉक्स रखे हुए हैं चारों ओर पंखे लगे हुए है कुछ लाइट लगी हुई है।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

बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं एक टीचर इन बच्चों को प्रोजेक्ट बनाते हुए देख रही है यहां पर लोहे के स्टैंड रखे हुए हैं।